इस दूकान में कुकर है बेंच है टूल है --

कर्यालय अभिक्षण अभियंता भवन निर्माण विभाग मुजफ्फरपुर का यह बोर्ड है इसके पीछे बिल्डिंग उलडिंग बन रहा है बिल्डिंग जो है --

ये रोड है रोड पे जाम लगा हुआ है रोड के बगल में दोनों तरफ बिल्डिंग है रोड पे ऑटो है बस है आदमी सब खड़ा है फ़ोन से बतिया रहा है और लड़की भी है जो हाथ में झोला ली हुई है।